इस तस्वीर में मुझे एक लड़की नजर आ रहा है।

बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे आदमी नजर आ रहा है।

बिल्डिंग का कलर येलो है।

बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लकड़ी का बेंच भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे फ्लावर के पोट भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक चेयर भी नजर आ रहा है।

शेल्व्स पे कई प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे पहाड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बच्चा भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे जिम के इक्विपमेंट भी नजर आ रहा है।

ने लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक बंबू का घर भी नजर आ रहा है।

बोट का कलर ब्लू है।

इस तस्वीर में मुझे सीमेंट का पाथ भी नज़र आ रहा है।

कांच के काउंटर पे मोबाइल भी डिस्प्ले किया गया है।

इस तस्वीर में मुझे नदी नजर आ रहा है।